और बच्चे बहुत अच्छे से कराटे कर रहे हैं।

कोई आ रहा है और कोई जा रहा है यहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक बड़ा सा घड़ा भी मौजूद है।

अरे दोस्तों ये एक गेराज है यहां पे बहोत से आदमी एक गाड़ी को ठीक कर रहे हैं।

हैलो दोस्तो यह एक होटल की तस्वीर है यहां पे एक बेड है।

और यहा पे एक पंखा भी है यहां बे एक--

ए_सी भी है यहां पे एक टी_वी भी है यहां पे एक--

टॉय ट्रेन के लिए एक ट्रैक बना है और यहां ये--

यहां पे एक डायरी प्रोडक्ट जो नमकीन मिलती है यहां पे बटर घी--

कि क्लीनिक की तस्वीर हैं जहां पे कुछ पेशेंट्स आते हैं और अपना--

शादी के प्रोग्राम की तस्वीर है यहां पे बहुत--

और यहां पे कुकीज भी रखे हुए हैं और यहां पे बिस्किट्स भी रखे हुए हैं।

यह एक संस्कृति डांस है यहां पे सात लड़किया डांस कर रही है।